यहां पे आदमी ने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है।

यह फोटो एक ढाबे की है। ढाबे के आगे उसका नाम लिखा हुआ--

ये एक स्विमिंग पूल की फोटो है।

मूर्तियों के साथ ही यहां बहुत सारे फूल भी हैं।

यह किसी फूल के माला की दुकान है यहां एक आदमी है एस_के सुपर सीमेंट की टी शर्ट पहन के खड़ा है।

सभी आदमियों ने मास्क लगा रखा है यहां छोटी से बड़ी हर तरह की साइकिलें हैं।

यह फोटो किसी होटल की है।

ये दुकान केरला आयुर्वेदा की है।

सामने काउंटर पर एक आंटी खड़ी है।

कांच के डिब्बो में रखने के साथ ही यहां इनके प्राइस भी लिखी हुई है।